ये खाने का स्वादिष्ट --

बोहोत सारे हरा-भरा पेड़ है ।

पावर टेलर्स लगे हुए हैं। मशीन से इसमे --

कच्चे का पके हुए पीला है अनार है।